मुझे इस फोटो पर एक सीमेंट का डाई करते दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

तिल के दो डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक रसोई दिखाई दे रहीं हैं।

एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

बाहर बल्फ दिखाई दे रहा है।